सब रंग-रंग के ड्रेस पहने हुए है कुछ-कुछ ने साड़ियाँ पहनी है नीचे का जो घास है पूरा हरा है सामने पेड़-पौधे भी दिखाई दे रहे --

फुल का हर रंग के फूल है। गेंदा चमेली चंपा गुलाब सब यहाँ दिखाई दे रहें हैं।

हाथ में फ़ोन हैगोल्डन कलर का है और किसी से बात कर रहा है। ब्लू कलर का पेंट पहना हुआ है कुर्सी पे बैठा हुआ है रेड कलर की।

बच्चे जो पेंट पहने है उसमें एक मिकी माउस बना हुआ है कुछ बच्चे ब्लैक कलर के पेंट पहने है कुछ ब्लू कलर का पेंट पहने है कुछ फ्रॉक पहने हुए है महिला नृत्य कर रही है ।

महिलायें शूट पहनी हैं पिंक उसके बाद पुरुषे शर्ट पेंट पहने हैं ।

एक लेवल लगा है जांच लैब लॉज लिखा हुआ है दिवार व्हाइट कलर की है पोस्टर भी लगी हुई है वहां पर |

यह बहुत से लग रहा है आस-पास बहुत सारा पानी हरियाली है।

व्यक्ति के हाथ में एक पेन है नीचे भी एक पेन रखी हुई है कवर रखी हुई है सामने एक व्यक्ति का हाथ भी दिखाई दे रहा है यहाँ पर ।

डांस क्लास दिखई दे रहे है पेस क्रिएटर्स डांस एकडमी के नाम से है बच्चे जो है ब्लू कलर की टी-शर्ट पहने हुए है अलग-अलग कलर की लगीज पहने है जूते पहने हुए है ।

ये पिक्चर कोई ग्रे कलर की है आस-पास टावर पूरा ग्रे है ।

घिया कलर का जो ये बुल है वो ब्लैक कलर का दिखई दे रहा है। सामने का दिवार पूरी गन्दी है उची घास पूस भी है।

बाइक का फ्रंट मिरर दिखाई दे रहा है पूल भी दिखाई दे रही है आसमान पूरा ब्लू है पर्पल है ग्रे है सड़क --

घास-फूस भी दिखाई दे रहे है उस जमीन की ओर मे पेड़-पौधा भी है आसमान का रंग नीला है पूरी तरह से ।

शादी समारोह दिखाई दे रही है जहाँ पे आस-पास पूरी टेंट लगी हुई है और चेयर भी है ।

एक यहाँ मकान है जो बहोत ही खुबसूरत है तीन मंज़िला मकान है बहोत सारी खिड़कियाँ है मेन गेट एक है आस-पास कोई भी मकान दिखाई नहीं दे रहा है आसमान का जो रंग है वो नीला है।

ये पादरी का समारोह लग रहा है जहाँ पे महिलाए भी है पुरष भी है जो पादरी का ड्रेस पेहेने हुए है। पीछे ईसामासिह भी है।

और इस कांच के अंदर भी घड़ियां सभी रखी हुई है ए.सी. भी लगी हुई है यहां पर।